आसपास में हरियाली भरी हुई है।

इस पर जलेबियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं मिठाई के डब्बे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर दो आदमी अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लोग दिखाइ दे रहे हैं इकट्ठा --

यहाँ पर बहोत सारे कुर्सी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर सामने एक मैदान है जिसमें वॉलीबॉल का नेट लगाया गया है।

सामने से दो टोटो दिखाई दे रहे हैं और इसमें आसाम ओईल लिखा गया है ये --